यहां पर दो बच्चियां मोमत्ती लेकर चल रही है इनके पीछे एक बाबा के ऊपर पेला।

पाल रखे हुए दो व्यक्ति पीछे पीछे चल रहे हैं और कुछ व्यक्ति भी पीछे साइड में चल रहे हैं।

यहां पर हर हर कलर की लाल है नीली है पीली है।

यह एक पीझा हट की दुकान है जिस पर कोकाकोला माउंटेन ड्यू और--

जूस वगैरा ये हर प्रकार का फास्टफूड इन्होंने रख रखा है यहां पर तीन लोग समान दे रहे एक सफेद कलर बैठा है जो की खा रहा--

और पंडी आलू ये किसी सब्जी वाले की दुकान है और यहां पर सभी--

एक रेस्टोरेंट है और इस पे कॉपी हब लिखा हुआ है जो कि झंकार के नाम से बाहर शीशे की तरफ--